दुइ पोस्टर लगें होंगे। एक दू दुइ आदमी थाड़े हैं। एक बालक जाए रो हैं नीलो गेट लगो है।

नीली नीला गेट है वो पोस्टर लगा हुआ है दुकान है एक कुर्सी धरी --